कही कही गुलाबी फुल भी प्रयोग हुए है गाड़ी के शीशे खुले हुए है।

घर के आधे हिस्से में हलके हरे रंग का रंग किया गया है और आधे हिस्से में रंग नहीं किया गया।

उद्यान के चारो और बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे है।

और उसको बीचों-बीच कुछ व्यक्ति पेड़ की छाव में बैठ के आराम कर रहे हैं।

इस तस्वीर में खेतो का दृश्य दिखाया गया है खेत बहुत दूर दूर तक फैले है और हलकी हलकी हरयाली भी है उनमे ।

मैदान के बिच बहुत सारे लड़के जो है वो खेल रहे है और वहा पे कुछ घास जो है वो ज्यादा नहीं उगी --

इसके अलावा सड़क बोहोत ही साफ-सूथरी और सुंदर है अभी कोई भी वाहन गुजर नहीं रहा।

यहाँ पे कुछ नर्सें जो है वो कुर्सी पर बैठी है और कुछ लोग अपने प्रशिक्षण के लिए आए है कुछ आदमी भी वहाॅं पे मौजूद है।

व्यायाम शाला में बहुत सारी उपकरण रखे गए है व्यायाम के लिए लेकिन वह उतनी आधुनिक प्रतित नही हो रहे दिवारो पे अभी सीमेंट नही है।

समुद्र में दो जाहाज भी चल रहे है जिसमें एक सफ़ेद और एक आसमानी नीले रंग का है।

ईमारत के बाहर महाराजा स्वीट्स एंड चाट लिखा गया है।